अह पार्क में थोड़ा सा घास है घास पूरा सूख गया है पेड़ पौधे हैं बहुत सारे यहां पे।

अलग-अलग तरह के फूल दिख रहे है।